यह एक बेकरी की दुकान है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

नीचे बहोत सारी बजरी पड़ी हुई है।

और पीछे की साइड एक डी फ्रिज रखा हुआ है।

और पीछे की ओर दीवार पर डिजाइन बना रखा है।

और साइड में कुछ कन्या रखी हुई है।

यह एक बहुत अच्छा सोफा है।

और ऊपर कुछ केबिल भी लटके हुए हैं।

अर नाव के ऊपर बहुत सारी चिले उड़ रही है।